नीचे नीले कलर की कुछ टोकरियाँ रखी हुई नजर आ रही हैं। स्ट्रॉबेरी का कलर लाल और पीला --

फोटो में जाली नुमा तार के अंदर एक शेर बैठा दिखाई दे रहा है।

फोटो में एक गाय जो हरे कलरे की रस्सी से बांधी दिखाई दे रही है। इस --

इस फोटो मे एक साउन्ड सिस्टम दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारे बक्से लगे हुए है --

इस फोटो मे बहु मंजले इमारत दिखाई दे रही है जिसमे कलरफुल लाइट लगी हुई है।

बिल्डिंग के फ्लोर पर पेड़ पौधे गमले रखे दिखाई दे रहे है। रोड पर लाइटिंग और शहर नजर या रहा है सीढ़िया काले कलर की लगी हुई दिखाई दे रही है नीचे पेड़ भी लगे --

इस फोटो मे एक सफेद बिल्डिंग नजर आ रही है जिसमे ए खिड़किया और रोशनदान लगे दिखाई दे रहे है काले कांच की खिड़किया --